पूल बना है पुराना वाला जो टूट गया है और एक जुगाड़ू वाला पूल बनाया गया है लकड़ी से जिसमें सभी लोग आना-जाना कर रहे है अपने बाइक को भी इस पार से उस पार ले जाते हुए दिखाई दे रहे --

और यहाँ सभी लोग अपने हाथ में कुछ पुस्तक पकड़े हुए हैं ।

पढ़ रहे है पीछे में एक व्यक्ति बोल रहे है और ये लोग शायद दोहरा रहे है अब क्या चीज़ हो रहे है तो कुछ क्लियर समझ नहीं आ रहा बाकि सभी लोग सफ़ेद कलर पहने हैं।

हाँ एक काला कलर का का कार खड़ा हुआ है एक टोयोटा कंपनी का गाड़ी है जिस प्रकार से मुझे कार दिखाई दे रहे है मुझे ये इनोवा कार लग रहे है गाड़ी का नंबर भी है यू.पी सिक्स फाइव डबल बी सेवन थ्री नाइन थ्री --